और कुछ के हाथ में बैट है खेल रहे हैंकुछ के --

ऊपर लाइट्स लगी हुई है ए_सी लगा हुआ है लोहे की चैनल गेट दिख रहा है।

ठेले में भी कुछ अंदर समान टंगे हुए हैं खाने के --

यहाँ सामने मुझे एक बोर्ड लगा हुआ है पर्पल और वाइट कलर का --

इस पे बस्टर डेरी फॉर्म लिखा है ब्लैक कलर का और अंदर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं दुकान के बाहर --

और बाहर सीढ़ी रखी एलुमिनियम की और गेट के --

और चेयर रखी हुई है प्लास्टिक के सामने एक प्लेट दिख रहा है प्लेट में चिकन बिरयानी रखी हुई है और एक गिलास दिख रहा है।

नीचे फर्श पे बहुत सारे बैनर पड़े हुए हैं।

और जिस पे लिखा है अ ब्लैक कलर और येलो कलर से सुकेडियो पैले --

आसपास में बैनर भी बने हुए हैं।

यहाँ सामने मुझे एक छत दिख रहा है छत पे नीचे बहुत सारी ईंट रखी है ईंट पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है ब्लैक कलर का एल्मुनियम का --

और ट्रांसपेरेंट गिलास की विंडो लगी हुई है।

बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं दुकान दिख रही है कपड़ों की --

के बाहर दो आदमी हैं सामने गेट दिख रहा है।

साइड में कुछ बॉक्स डस्टबीन रख्या हुआ है।

यहाँ सामने मुझे एक गेट दिख रहा है गेट अ रेड कलर का और इधर ब्लैक कलर का एक गेट है खंबा बना हुआ है।

और एक बड़ा सा उसमें घेरा हुआ है स्टील का उसके अंदर मूर्तियाँ रखी हैं ।

रूम दिख रहा है ऊपर अ ब्लैक कलर का पेंट से पेंट किया हुआ है।

और मशीन के पास भी चेयर रखा हुआ है।

इसके ऊप ऊपर एक बैनर लगा हुआ है इसमें रघुवंशी फिटनेस जिम दिख रहा है।

और बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं विंडो पे ट्रांसपेरेंट विंडो है।

और खाना रखा हुआ है चावल रखा हुआ है सफेद कलर का दाल रखी हुई है।

सब्जी रखा हुआ है सलाद रखा हुआ है।

रेलिंग बने हुए हैं इस्टील के पेड़ दिख रहा है नीचे टाइल्स लगी हुई है।

छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

घर ट्रांसपेरेंट काँच का है बाहर एक आदमी खड़ा है।

ओएम अ लाइट्स लगी हुई है नींबू मिर्ची टंगी हुई है अंदर बड़ा सा पोस्टर दिख रहा है।

यहां सामने मुझे उम्म काली सी भैंस या गाय भैंस दिख रही है।

इसके गले में और मुँह में रस्सी बंधी हुई है।

सामने र ला लाइट्स दिख रहा है रेड कलर का --

और पीछे खंबे लगे हुए हैं इसमें रस्सियाँ बनती है रस्सियों पे बहुत सारे --

और ऊपर पंखे लगे हुए हैं बहोत सारे लाइट्स लगी हुई है ए_सी लगा हुआ है।

रैक लगे हुए हैं रैक में बहुत सारे रैप किए हुए कपड़े रखे हुए हैं टैक्स के अंदर --

अस मअगल बगल में सामने सामने बिल्डिंगे बनी हुई है घर बने हुए हैं।

लगी हुई हैं दुकानें दिख रही हैं।

और टेबल को रेड कलर के कपड़ों से कवर किया गया है।

यहाँ सामने एक दुकान दिख रही है।

यहाँ सामने मुझे दुकान दिख रही है दुकान में ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

तथा सिल्वर की रिंग रिंग रखी हुई है बहोत सारी--

ट्रांसपेरेंट काँच के गेट लगे हुए हैं लोहे के गेट लगे हुए हैं शटर लगी हुई है।

मार्बल भी ब्लैक कलर के लगे हैं मैट बिछे हुए ग्रीन कलर के --

और बोर्ड पे पिंक कलर से ब्राइट स्माइल लिखी है डॉक्टर डेंटल क्लिनिक --

और सामने मुझे ट्रैक्टर से ऐसा दिख रहा है।

खिड़कियाँ दिख रही हैं बालकनी दिख रहा है।

और दोनों साइड में ए एक पूरे ट्रांसपेरेंट काँच के मिरर लगे हुए हैं खिड़कियों में --

यहाँ सामने मुझे बोर्ड लगा हुआ है दुकान दिख रही है।

कॉम्बिनेशन है कुछ लोग खड़े हैं एक आदमी बाहर फोन पे बात कर रहा है।

बहुत सारे बच्चे हैं और झूले बने हुए --

उसका कैप बना हुआ है पीछे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ऑरेंज कलर की बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हुई है उसमें --

सामने मुझे पूल दिख रहा है ब्लू कलर का --

और बगल में अ स्टील की सीढ़ी बनी हुई है।

और सामने एक मूर्ति बनी हुई है लेडीज की सीढ़ियाँ दिख रही है बाहर साइड में लोहे की --

सामने मुझे बड़ी सी रूम बड़ा सा रूम दिख रहा है विंडो लगा हुआ है।

नीचे मैट बिछी हुई है और बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं साइकिल मशीन रखी है।

और म उ ब्लैक कलर के अ पूरे लोहे की रोड रॉड बनी हुई है मशीने रखी गेट दिख रहा है।

लाइट्स लगी हुई है कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर काउंटर में कुछ बोटलें रखी हुई हैं।

यहाँ सामने मुझे एक कुआँ दिख रहा है।

और कुए में पानी भरा हुआ है आसपास में लोहे की जालियाँ बनी हुई है।

सामने एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे --

सोफे रखे हुए कुछ लोग खड़े हैं स्टेज को --

दिख रहा है ट्रांसपेरेंट फ्लावर लगे हुए हैं।